और गौतम बुद्ध के सर पे वो मुकुट लगी हुई है।

यहां पे बहोत सारे रूम हैं होटल जैसे दिख रहे हैं रूम के--

और बाहर की तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग लगी हुई है।

और यहां पे बोर्ड है बोर्ड पे रेड कलर में कुछ लिखा हुआ है।

आप देख सकते हैं यहां पे मेला है।

और एयरपोर्ट है यहां पे जहाज भी उतरा हुआ है।

और टेंट में पर्पल कलर भी है लाइट जल रही है काफी सारे यहां पे सोफे लगे हुए है।

लोहे के रॉड से रेलिंग भी लगा हुआ है।

और छोटे छोटे भी पत्थर है।

ये कोई मेला है यहां पे बहोत ज्यादा काफी भीड़ है।

ओ किसी रोड का फर्श दिख रहा है।

ये रूम है इसकी काफी अच्छी सजावट की गई हैं यहां बड़ा सा सोफा रखा गया है।

यह एक हॉ स्टेशन का हाल दिख रहा है।